यहां पे पानी छिड़कने के लिए बोतल स्कैनर और भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं बॉडी लोशन और --

फेस पर लगाने की क्रीम और कांच भी लगे हुए हैं पिंक कलर की डेकोरेशन से दिखाया गया है दीवार का कलर है।

यह एक कार्टूनों की दुकान है यहां पे लकड़ियों के पाइप भी रखे हुए हैं जो उनके अंदर --

यह एक स्कूल है यहां पे बड़े बड़े बेंच लगी हुई है व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है।

बीच बीच में डेकोरेशन किया हुआ है और यह बहोत ही सुंदर घर दिखाई दे रहा है बहोत दूर में फैला हुआ है।

पैंफलेट और कांच की गेट लगे हुए हैं यहां ब्लू कलर की डिजाइनों से घर बना रखा है।

काम कर रहा है और यहां पे बहोत सारी बाइक भी पार्क की हुई है पेड़-पौधे भी बहोत सारे लगे हुए हैं कांच के गेट लगे हुए हैं एक ग्रे कलर की गाड़ी भी पार्क की हुई है।

और यहां प्रिंटेड मालाएं रखी हुई है साड़ी रखी हुई है नीचे दरी बिछाई हुई है लाल कलर की और मेज दिख रही है।

यहां पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी है यहां पे सेलिब्रिटी की मौत हो चुकी है।

और यह सारे कबूतर जैसे दिख रहे हैं किसी के अलग कलर है किसी का और कोई कलर है।

ग्रीन कलर में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है यहां ऊंट और एक चित्र बना हुआ है आदमी का यहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है आसपास।

एच_डी_एफ_सी बैंक है यहां पे लोग--

बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है पास मे एक पतंजलि स्टोर चिकित्सालय भी लिखा हुआ है यह बाबा रामदेव के पैंपलेट लगे हुए है।

यहां पे बहोत सारी चेयर रखी हुई है जहां आराम से बैठके खाना खा सकते हैं पास में एक डस्टबिन भी रखा हुआ --

यहां नीचे अम् इसकी ओपनिंग हुई है नई नई शॉप खुली है जहां पे गुब्बारे और से --